यहाँ पे कोई तेल भरवाने न आवे हेने गइया एगो होना गईया हई दोनों गईया औने आदमी सब खड़ा है।